और इस फोटो में पीछे की तरफ कुछ और सामान भी दिखाई दे रहा है ठीक है।

पार्क है ये ठीक है ये पार्को में ये झूले वगैरा होते हैं घास होती है ठीक है और सामने बैठने की सीट भी दिखाई दे रही है दिन का समय --

पीछे एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है सेल --

लाइटिंग्स दिखाई दे रही हैं और रात का--

हल्की हल्की धूप दिख रही है काफी सारे घर दिख रहे है और घर के ऊपर एक टंकी दिख रही है जो सफेद रंग की है।

बाहर काफी सारे कट्टे रखे हुए हैं एक सिलेंडर रखा है कुछ पौधे हैं ऊपर एक घर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में दीवार सफेद रंग की दिखाई दे रही है और गोल्डन कलर है।

और एक लड़का खड़ा है जिसने काले रंग का कुर्ता पहना है।

हरी चप्पलें पहनी है जो उतार के खड़ा हुआ है।

कछुआ कहते हैं इसको ठीक है ये ना कछुआ है और बाहर से ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है अंदर से सॉफ्ट होता है और पानी में रहता है ये ठीक है।

और एक गाड़ी है जिस पे लिखा है डी_के_एम ।

ठीक है खिड़की भी दिखाई दे रही है यहां पर और कुछ पौधे दिख रहे हैं।

काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

कुछ घर दिखाई दे रहे हैं एक कार भी दिख री है जो व्हाईट कलर की हैं।

इस फोटो में काफी सारी अलमारी दिखाई दे रही है। दो अलमारी गुलाबी रंग की है। दो अलमारी नीले रंग की है फ़र्श पे--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

एक पिंक कलर का गेट लगा हुआ है।

और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बिजली के तारें भी दिख रही हैं पानी दिखाई दे रहा है।

एक अ हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ है तीन बेड है सामने एक की गद्दी है।

एक घ एक यहां पे चेयर दिखाई दे रही है।

एलोवेरा जेल ग्लूकोन डी के डिब्बे और बोहोत सारा सामान--

ठीक है और यहां पर दीवाल पे--

और कुछ कार दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है घास भी दिखाई दे रही है।